जो काफी खूबसूरत लग रहा है ये क्योंकि रात का समय--

ये बेसिकली एक आर_टी_ओ ऑफिस जैसा लग रहा है हमे--

यह एक रेलवे स्टेशन की फोटो है जिसको हमने यहां पे जो हमारे सामने जो फोटो आया है वो एक ड्रोन से लिया गया है ऊपर से यह खींचा गया फोटो है।

हमें यहां पे दिख रहा है सफेद टाइगर है ये।

और अंदर जो है काफी हरियाली भरा इनका माहौल है जो इनका जो रहने का जगह है।

ये यहाँ पे क्या है एक बहुत बड़ा दिखा दे रहा है एक ये जो एरिया है।

ये हिरणों के लिए रिजर्व है। यहां बहोत सारे हिमे हिरण दिख रहे है जो आपस में--

यहां पे बड़ा सा एक पोस्टर टंगी है जिसमें शास्त्रीय संगीत का यहां पे पोस्टर लगे हुए हैं और हाल पूरी तरह से खाली है सामने कुछ भगवान की जो मूर्तियां जो है दीवाल में--

सामने से कस्टमर को दिख रहा है कि भाई यहां पे कौन से कौन से मिच्चर बूंदी मिठाई--

अपने कस्टमर का और सामने है एक बड़ा सा रिसेप्शन है।

और प्राइवेट ज्यादा चलती है ये जो बस है।

यहां पे डेकोरेशन है और लाइटिंग जो है बहुत अच्छा सा किया गया है।

छोटा सा झरना दिख रहा है झरना काफी बढ़िया सुंदर लग रहा है क्योंकि पानी बहोत साफ सुथरा दिख रहा है आसपास जो है कोई व्यक्ति नहीं है बीच जंगल में --

और काफी खूबसूरत ये जो बिल्डिंग हमें दिख रही है और आस पास जो है गार्डन है छोटा सा जहां टहल सकते हैं।

जो पहाड़ों से बेहकें झरना आ रहा है बहोत ही सुंदर दूध की जैसे ये बेह रहे हैं।

रोड के किनारे हमारे सामने एक ढाबा है जिसका नाम है जीत पंजाबी ढाबा बहोत सुंदर इनका जो इंटीरियर है बाहर से भी--

हमें जो अगला फोटो प्राप्त हुआ है। वह एक कपड़े दुकान का है ये कपड़ा दुकान काफी खूबसूरत सा लग रहा है।